चित्र में मुझे बोर्ड दिखाई दे रहा है।

चित्र में मुझे एक ट्रक खड़ा दिख रहा है।

मुझे एक चित्र दिख रहा है।

मुझे एक चित्र दिख रहा है।

मुझे एक चित्र दिख रहा है।

चित्र में मुझे खेत दिख रहा है।

मुझे एक चित्र दिख रहा है।

मुझे एक चित्र दिखाई दे रहा है।

दिख रही हैं और बिल्डिंग्स दिखाई--

चित्र में शॉप का नाम डॉक्टर के_एल माली मेमोरिया होम्यो हेल्थ --

मुझे एक चित्र दिखाई दे रहा है।

मुझे एक चित्र दिख रहा है।

चित्र में मुझे नदी से निकलती हुई रोड दिख--

रही है चित्र में एक आदमी दिख रहा है।

चित्र में शीशा दिख रहा है।

चित्र में मुझे नदी दिखाई दे रही है।

दे रहा है चित्र में मुझे--